ऊपर की लाइटें जल रही है सीलिंग लाइटें जल रही हैं।

सामने एक स्कूटी खड़ी हुई और एक कार भी रखी हुई है।

सड़क पर कुछ सूखे हुए पत्ते भी डले हुए हैं।